एक औरत अंदर जा रही है सामने एक कार है।

सामने एक बहुत बड़ा टावर है।

कुछ दुकानें है उसके बाहर पोस्टर लगा हुआ है जिस पर लिखा गया है फ्रेस मैन पार्लर ताज मूर्ति पार्ट्स ।

एक आदमी है सैंडो गंजी पर।

पीछे कुछ पौधे है उधर भी बाहर में घर है।

उधर ब्लैक कलर का टंकी है।

सामने एक ठेला है बहुत सारे आदमी आ जा रहे हैं।

घर में एंट्री करने का गेट है।

सामने कुछ बोतल रखे गए है लाइटें लगी गई हैं।

नीचे और कुछ लिखा गया है परगति सदन।

सामने एक घर है अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

सीढ़ी बना दिया गया वॉटर पार्क में जाने के लिए।

दीवार पर रेड कलर का बैलून लगे हुए हैं एक ए_सी लगा हुआ है।

नीचे एक टोटो है टोटो के सामने एक आदमी खड़ा है सादा रंग का टी शर्ट पे सदा रंग का पैंट पहना हुआ।

दीवाल का रंग व्हाइट है दीवार पर कुछ पिक्चर बना हुआ है।

यहां पर बहुत सारे सामाने रखे हुए हैं जैसे जैम अचार हॉर्लिक्स ।

यह एक मंदिर का दृश्य है यहां पर सामने एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है उसका रंग व्हाइट है।

दिवाल पर एक मूर्ति बना हुआ है।

बहुत सारे कुर्सी टेबल है।

कुछ खाने का फोटो का दृश्य है उस पर लिखा हुआ है चटपटा चाट हाउस ।

यह एक बैंक का दृश्य है।

यहां पे नीचे ब्लैक कलर का लोहा का गेट लगा हुआ है।